जैसा कि हम इस तस्वीर में देख पा रहे हैं। हमें एक गाड़ी दिखाई दे रही है। हमें उसकी नंबर प्लेट दिखा दिखाई दे दिखाई दे रही है।

जैसा कि हम इस तस्वीर में देख पा रहे है हमे एक सामने शीशा दिखाई दे रहा है हमे जिम की साइकिल दिखाई दे रही है ट्रेडमिल दिखाई दे रही है।

बैंक के बैनर पे लिखा है कोप बैंक उसके बराबर में एक और बैनर दिखाई दे रहा है जिसपे लिखा है पीपल सॉल्यूशन ।

ये बिल्ली का खाना लग रहा है जिस पे लिखा हुआ है प्रोडाइट और नीचे हमें कई सारे पोस्टर भी लगे हुए नजर आ रहे हैं जिसपे लिखा हुआ है स्टे फ्रेश स्टे फोकस्ड और और भी एक पे लिखा हुआ है फ़िडिल --

जैसा कि हम इस तस्वीर में देख पा रहे हैं हमें एक बाइक दिखाई दे रही है हमें एक आदमी दिखाई दे रहा हैं।

फोटो में हमे एक बैनर दिखाई दे रहा है जिसपे लिखा है रॉयल पिज़्ज़ा ।

नीचे हमे बहोत सारी लस्सियां लटकी हुई दिखाई दे रही है हमे एक छत दिखाई दे रही है जिसपे बहुत सारी लाइटे लगी हुई है।

जो कि अपने फोन से वीडियो बना रहे हैं लड़कियां भी अपने फोन से वीडियो बना रही हैं।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

इस फोटो में हमें एक नदी दिखाई दे रही है। एक हमें पेड़ दिखाई दे रहा है।

मे एक स्कूटी भी दिखाई दे रही है और पीछे हमें एक भट्ठा भी दिखाई दे रहा है।

इस फोटो में हमें कई सारे पेड़ दिखाई दे रहे हैं जिनका रंग हरा है।

कुछ सफेद आसमान हमें दिखाई दे रहा है और पानी का रंग बिल्कुल नीला है।

इस फोटो में जैसा कि हम देख पा रहे हैं ये समुद्र का किनारे का व्यू दिखाई दे रहा है यहां पर लोग खड़े हैं।

पीछे को हमे एक बहोत बड़ा टेंट भी दिखाई दे रहा है बहोत सारे पेड़ दिखाई दे रहे हैं घर दिखाई दे रहे है और पिलर भी दिखाई दे रहे है और --

टाइले सफेद और ऑरेंज रंग की दिखाई दे रही हैं।

उसके इस अंदर में दो आदमी भी दिखाई दे रहे हैं।

पीछे हमें एक बहोत बड़ा खेत नजर आ रहा है जिसमें हरे कलर की पेड़ नजर आ रहे हैं और पीछे हमें और भी बड़े बड़े पेड़ नजर आ रहे हैं।